कुछ सामान बॉक्सस में है कुछ समय पीले बॉक्सस में है।

सामने की ओर काफी से काफी सारे आदमी औरत और कुछ बच्चे भी दिखाये जा रहे हैं।

यह एक का दृश्य है यहां पर काफी सारी टेबल और कुर्सियां लगाई गई हैं।

सामने की ओर काफी सारे पेड़ भी दिखाये जा रहे हैं कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है।

एक गेट भी लगाया हुआ है जिसपे चाबी लटकी हुई है।